और कुछ पोल भी दिखाई दे रहा है।

हमने पर दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।

इंसानों ने पीला रंग का हेलमेट पहना हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में बड़ा सा गुफा दिख रहा है।

दीवार का साइड में व्हाइट कलर का पर्दा भी दिख रहा है।

और अण्डा का ट्रे भी दिखाई दे रहा हैं उसका ऊपर में सॉस वगैरा दिखाई दे रहा है।

एक कंटेनर भी दिखा रहा--

साइड में दीवार भी दिख रहा है।

चम्मच भी दिख रहा है।

और पाइप भी दिख रहा है।

बहुत सारा लाइट भी दिख रहा है।

ऊपर में ब्लू कलर का सीलिंग भी दिख रहा है।

एक ऑटो बाइक गाड़ी भी दिख रहा है।

एक चेयर भी दिख रहा।

दो आदमी दिख रहा है।